इधर एक गैरेज है गाड़ियां बन रही हैं इधर कोई नहीं दिख रहा एक फोर व्हीलर खड़ी हुई है एक बाइक खड़ी हुई है।

इधर एक गार्डन है छोटा सा छोटे-छोटे पेड़ लगी हुई है कुछ गमले में पेड़ दिख रहे हैं यहां सभी प्रकार की पेड़ पौधे लगे हुए हैं एक पाइप डला हुआ है।

इधर साफ सफाई चल रही है पानी की पेड़ पौधे में पानी दिया जा रहा है कुछ गार्डन बना हुआ है अच्छा एक लेडीज पानी दे रही पौधों को।

यह हनुमान जी की मूर्ति है। खिड़कियां दरवाजे सभी पर फूल मलाए टंगे हुए हैं।

टेबल रखी हुई है ऊपर लाइटें दिख रही हैं फैन दिख रहा है।

साइड पे कुछ मार्केट बना हुआ है पीछे रोड है।